यह एक ठे स्कूल है जोकि सब बरामदा में बहुत से छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे है उनमे से एक शिक्षिका खड़े हुई किसी पेपर को ले के लिखती नजर आ रही हैं।

यहाँ पे एक रूम है जोकि इस रूम के अंदर में बहुत सारे गुलदस्ते सब को सजाए हुए है ऊपर में गमले से सजाया हुआ फूल दिखाई दे रहा है और ऊपर में कुछ दो फ्लैटे भी दिखाई दे रहीं है और रूम सब चमकता नजर आ रहा हैं।

यहाँ पे दो गधे चरते नजर आ रहे है इस गधे के किनारे में कुछ छोटे-छोटे घाँस है आउ गधे लोग किसी को देखते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक तालाब है जोकी दो खड़ो में खण्डे हुए है और उसके आगे पीछे बोहोत लोग आते जाते है नजर आ रहे है और बड़ा -बड़ा चट्टान भी दिखाई दे रहा है और उसके पीछे में कुछ लोग खड़े हैं।

यह एक प्रकार के यीशु का चर्च है जोकि बोहोत सारे ईसाई धर्म के लोग उसको पकड़ के आगे में खड़े हुए है कुछ लोगों के हाँथ में कुछ केंडल भी हैं।

यह एक मॉल दिखाई दे रहा है जोकि बहुत सारे लोग इधर-उधर जाते नजर आ रहे है वेटर्स सब भी लगी हुई है ऊपर में नर्स की बहुत ज्यादा व्यवस्था की गई है और कुछ लोग इधर-उधर दिखाई देते हुए नजर आ रहे है ऊपर में लाइट भी है और कुछ मक्का दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पे एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसके निचे में एक मगरमच्छ चलते नजर आ रहा है और वह सुखी जमीन पर है उसके किनारे मे मुट्ठी के कुछ बड़े से हाल दिखाई दे रहे है अगल-बगल छोटे-मोटे घास भी दिखाई दे रहे है और वह --

यह एक बोहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है इसके नीचे में मिट्टी सब दिखाई दे रही है और बादल सब भी अच्छे से नीले दिखाई दे रहे है और यह एक दिन का समय दिखाई दे रहा है निचे में कुछ छोटे-छोटे घास भी बने हुए नजर आ रही हैं।

यह एक झरना दिखाई दे रहा है जो की बहते हुए नजर आ रहा है उसके चट्टान के उपर मे दो व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे है और पेड़ भी धनघोर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं।

दिख रहे है गमला सब भी दिख रहे है दिन का समय हर कुछ रेलिंग भी लगी हुई नजर आ रही हैं।

यहाँ पे कोई शादी समारोह होते हुए दिखाई दे रहे है जोकि बोहोत अच्छे से सजाये हुए नजर आ रहे है उसके भीड़ भी बहुत ज्यादा है और कुछ लोग इधर-उधर करते हुए नजर आ रहे हैं।